एक यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे स्टील का क्राफ्ट बनाया गया है जो की देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत लोग इसको खरीदने के लिए आते हैं बहुत अच्छा लगता है ये सब खरीदने में और बहुत ही बड़ा --

बहुत भीड़ भी होता है फिर भी हम लोग यही लेने के लिए जा --

ये एक इस में बहुत सारा डोसा है जो कि खाने में बहुत अच्छा लगता है डोसा हम लोगो को और बहुत लोग को डोसा अच्छा लगता है हम भी डोसा खाते हैं बहुत अच्छा लगता है खाने में डोसा।